यहाँ पे हम एक पार्क जैसे जगह देख पा रहे है जहाँ पे हम कुछ बैठने की जगह भी देख सकते है और इस पार्क जैसे जगह में हम कुछ छोटे बड़े हरे रंग के पेड़-पौधे देख पा रहे है और यहाँ पे हम कुछ --

यहाँ पे हम एक बिल्डिंग देख पा रहे है इस बिल्डिंग के पास में हम कुछ दुकान देख सकते है।

यहाँ पे हम एक कोचिंग सेंटर देख सकते है इस कोचिंग सेंटर में हम कुछ टेबिल और कुछ चेयर देख पा रहे है एक ए.सी. भी हम यहाँ पे देख सकते है इसके आलावा यहाँ पे हम कुछ बोर्ड भी देख पा रहे है और एक सी.सी.टी.वी. कैमरा भी हम यहाँ पे देख सकते है ।